यह एक बस स्टैन्ड है। इस बस स्टैन्ड में बोहोत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। बोहोत सारे बस लगे हुए हैं। यहाँ पे बोहोत सारे लोग बस में बैठने के लिए आए हुए हैं।

ये झरना है। झरने में बहुत सारे पानी नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लड़की बड़े से पत्थरों पे खड़ी होके फ़ोटो खिंचवा रही है।

चारों ओर बहुत बड़े बड़े खंभे दिए गए है। यहाँ पे नदी के बगल में बड़े बड़े घास और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इस नदी में कुछ लोग --